यहाँ पर हमें बोहत सारी कुर्सी डली हुई दिखाई दे रही जहाँ पर टेबले भी रखी हुई है वहाँ पर एक टेबल पर एक कोफ़ी का ग्लास भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ पर कुछ बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहे है जिनकी ला--

यहाँ पर एक फैक्ट्री बनी हुई दिखाई दे रही है जिसमे बहुत ज्यादा मशीने रखी हुई दिखाई दे रही है वहाँ पर लोहे की बहुत ज़्यादा मशीने रखी हुई है जिससे कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा--

खड़े हुए दिखाई दे रहे है उनके सर पर सफ़ेद कलर की टोपी है और कुछ व्यक्ति अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए दिखाई दे रहे है गणेश जी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं।